एक ट्रैक्टर नज़र आ रही है बोहोत सारे नीम के झाड़ और उ करंट के पोल करंट के वायर दिखाई दे रहे है एक छोटा सा फूलो का झाड़ --

इधर एक शॉप दिखाई दे रहा है | अ एक साइकिल खड़ी हुई है | दो स्कूटर्स खड़े हुए है | ब्लैक कलर का गेट है।

एक स्कूटी इधर खड़ी हुई है इस शॉप के अंदर लोग खड़े हुए है बोहोत ही खूबसूरत ये शॉप नजर आ रहा है।

इधर पानी की ब्रिज दिखाई दे रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है लिखा गया है पत्थर है।

इधर एक पानी का तालाब दिखा रहा है बोहोत सारे झाड़ दिख रहे है ये पानी जा रहा है बड़ी सी नदी मै इस पानी का तालाब बोहोत ही खूबसूरत दिख रहा है पानी के झाड़ दिख रहे है।

पोल्टी फारम बोलकर लिखा हुआ है पूरा हुआ कुंडा--